पेड़-पौधे बहोत सारे यहाँ पे पीपल के दिखाई दे रहे हैं नीम के भी ।

यहां छोटी-छोटी एल.इ.डी. लाइट लगी हैं यहां टेबल चेयर है दो-तीन लोग घूम रहे हैं।

इनसे हर मनोकामना पूर्ण होती है हर एक की रक्षा करती है माँ सब की मुरादें पूरी करती हैं यहाँ बच्चे लोग बहोत है ।

मनु सेन्टर मान्तरा ट्रैन सैनी कप --

देख सकते हैं नारियल के खजूर के पेड़ हैं ।

होन्डा शोरूम है यहाँ गाड़ियां लगी हुई है बहुत सुन्दर-सुन्दर व्हाइट नीले कलर की अन्दर शोरूम में बाहर भी गाड़ियां है।

लोग दिख रहे हैं और चारों तरफ से यहाँ घेरा हुआ है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये ।

हालेलुइया गॉड का है ।

सामने भी छे मज़िला और ये --

और यहाँ पर बड़े-बड़े लोग भी घूम रहे है यहाँ कोई खेल हो रहा है। क्रिकेट वगैरा ये बहुत सुन्दर और बहुत अच्छा दिखाई देता है।

ये राक्षसों का विनाश करती है।